बिल्डिंग के नीचे तीन गाड़िया बाहर खड़ी हुई हैं जिसमे से दो पुलिस की गाड़िया हैं और कुछ लोग भी जमा हैं यहा पे ।

यहाँ पर एक मेड़ है जो ईटों से बनाई गयी है। सिमेन्टेड हैं।